और कुर्सी भी लगाया गया है और उसके अपोजिट साइड में बहोत सारे पी_सी लगाए गए हैं।

यहां पे भारत का भी झंडा लगाया गया है और बजरंगबली का भी झंडा लगाया गया है।

इस फोटो में दिख रहा है कि यहां पे एक बड़ा सा कमरा है जिस कमरे के अंदर एक टेबल लगा हुआ है और वहां पे एक वाइट कलर का कुर्सी लगा हुआ है।

कुछ लोग घर के अंदर है यह लाल कलर का घर के पीछे एक पेड़ भी है और आसपास में बहुत सारे गाड़ी लगाए गए हैं।

बहुत सारे बेंच लगाए गए हैं और वाइट कलर के कुर्सियां लगाए गए हैं।

कुछ कुर्सियों के ऊपर कुछ लोग सोए हुए हैं चादर ओढ़कर और ऊपर पंखा लगाया गया है।

इस फोटो में दिख रहा है कि एक वाईट और रेड कलर का केक है जिस केक के ऊपर दिल बना हुआ है और कैंडी रखा हुआ है।

और यहां पे छ महीने का बच्चे का भी चलने वाला साइकल लगा हुआ है।

जिस बिल्डिंग के ऊपर एक ब्लैक कलर का पोस्टर है।

उसके नीचे बहुत सारे बाइक लगाए गए हैं अंदर और बाहर एक ब्लैक कलर का।

वैन का कलर व्हाइट और ऑरेंज जैसा है।

और साइड में बहुत सारे घास फूस है और एक घर के ऊपर लिखा हुआ है।

इस फोटो में दिख रहा है कि यहां पे एक वॉटरफॉल है जिस वॉटरफॉल के साइड में पहाड़ जैसा कुछ है और पेड़ पौधे भी हैं।

इस फोटो में दिख रहा है कि यहां पे एक शीशे का गेट लगाया गया है और ऊपर बहुत सारे शीशे लगाए गए हैं।

यहां पे फोटो में दिख रहा है कि एक दुकान बन रहा है जिस दुकान का नामभी जेई मेडिकल निट पटना लिखा हुआ है और यहां पे फिजिक्स वल्लाह टी शर्ट में लिखा हुआ है।